यहां पे लाइटिंग है कलर कलर के और एक गेट है और एक खिड़कियां है और दिया जल रहे हैं।

यहां पे दो तीन लोग हैं और यहां पे टेबल है कुर्सियां हैं और यहां पे बहोत सारे समान हैं।